टेबल के उस पर दो महिलाएं खड़ी हुई हैं।

बिल्डिंग पर जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है।

छो छोटे पेड़ है कुछ बड़े पेड़ है और इस रोड पर एक महिला जाती हुई नजर आ रही है।

बिल्डिंग का कलर ग्रे और ब्राउन कलर का है।

पीछे एक फोटोशूट का माला लगा हुआ है।

जिसमें एक का कलर व्हाइट एक का ग्रे एक का ब्लू कलर है।